द्वार बना है वो काफी खुबसूरत द्वार है और सामने गाड़ी भी है ।

और अलग-अलग तरह के सामान है।

यहाँ पे एक मंदिर है मंदिर कास उ उ मंदिर के पास बहुत सारे लड़के खड़े हैं।

ओ फोर व्हीलर बाइक खड़े हैं और यह अस्पताल व्हाइट कलर का बनाया गया है।

सेण्टर है यहाँ बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा गया है ताकि आदमी को --